ये एक लाइब्रेरी का पिक है जिसकी छत ब्लैक एंड व्हाइट है। और नीचे जमीन भी ब्लैक एंड व्हाइट है और जिसकी जिसमे ब्लैक कलर की रेक बनी हुई है। उ--

ये किसी मोल के बाहर का पीक है यहाँ पर ढेर सारे फाउंटेन लगे हुए हैं।

ये एक हॉल के बाहर का पिक है जहाँ पर सजावट हो रही है।

यहाँ पर ढेर सारी पत्थर की स्टेयर्स बनी हुई है और यहाँ पर ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर से सजाया जा रहा है। यहाँ पर रेड कार्पट भी बिछी--

जो कि माउथ आर्गन एक बजा रहा है एक ढोल एक सितार बहुत सारे सब कुछ बजा रहे पीछे मछली बनी हुई लगी हैं और साइड मे शीशे |

उसके अंदर से पानी के झरने बह रहे हैं और वहीं इन्ही-इन्ही साइड में रेड वाइट गोल्डन कलर की लाइट्स लगी हुई है।

ये एक पत्थर की मूर्ति का फ्रेम है जिसमें कई तरीके की मूर्तियां बनी हुई है।

छोटे-छोटे से पेड़ लगे हुए हैं| यहाँ जमीन पर सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पर एक आदमी का हाथ दिख रहा है उसके हाथ मे एक छोटा-सा फूल है।

एक बड़े से ग्राउंड का पीक है जहाँ पर इंटर लॉकिंग सड़क बनी हुई है और यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई है।

सब लोग कैप लगाए हैं। क्यूंकि बहुत तेज धूप है। और पीछे की तरफ बड़े-बड़े से पेड़ लगे हुऐ हैं।

चारो तरफ बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ के जमीन पर मिट्टी फैली हुई है ।

यह ये एक मछली मंडी का पिक है जहां पर ब्लू ऑरेंज रेड कलर के डब्बो के ऊपर मछलियां अलग-अलग सेक्शन में रखी हुई है।

ये एक शोरूम के बाहर का पिक है जहाँ पर लकड़ी की ती-तीलीओ से बने हुए फ्लावर पोट और ड-डलिया रखी है।

एक फल की दुकान पर वो फल वाला बैठा है और जिसकी शॉप पे केले अंगूर सेब अनार तरबूज खरबूजा सब फ्ल--

ये एक जिम का पिक्चर है जहाँ पर एक आदमी बड़ी-सी बॉल पर एक्सरसाइज कर रहा है और सा पीछे की तरफ रनिंग मशीन रखी हुई है।

मंदिर के किनारे पर एक आदमी कहीं जा रहा है और वह मास्क लगाए हुए है और साइड में एक औरत भी दूसरी तरफ जा रही है।

और यहां पर कई सारे पंखे लगे है चर्च का कलर व्हाइट है और बाउंड्री ब्लू कलर की है ।